यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।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

एक बोतल है। एक हेंगर भी है जिसपे कपड़ा टंगा हुआ है।

कुछ आदमी दिख रहे है घर दिख रहे--

पेड़ पौधे दिख रहे हैं बाहर बजरी दिख रही है।

ग्रीन कलर के बोर्ड पर इंडियन हर्बस लिखा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमे मुझे बहोत सारे लैपटॉप नजर आ रहे है।

यह एक इलेक्ट्रिकल शॉप है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

एक ड्राई मशीन दिख रही है रोटी बनाने की मशीन दिख रही है कुछ येलो कलर बल्ब दिख रहे हैं।

क्रेन मशीन से मिट्टी खोदी जा रही हैं।

कैमरा दिख रहा है पढ़ने का बोर्ड दिख रहा है।